पार्क काफी बड़ा दिखाई दे रहा है पार्क मे काफी सारे लोग दिखाई दे रहा है पार्क मे एक बोर्ड दिखाई दे रहा है बोर्ड काफी बड़ा दिखाई दे रहा है बोर्ड पर वेलकम लिखा हुआ है। बोर्ड के नीचे रेलिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक गार्डन नज़र आ--

नज़र आ रही है बिल्डिंग काफी बड़ी दिखाई दे रही है बिल्डिंग को काफी अच्छी डिज़ाइन किया गया है बिल्डिंग के बाहर काफी ज्यादा स्पेस नज़र आ रहा है बिल्डिंग मे कुछ बोर्ड लगे हुए है यहा बाजू मे गार्डेन बने हुए है।

एक गाँव नज़र आ रहा है। गाँव मे काफी सारे घर दिखाई दे रहे। गाँव मे काफी सारे लोग नज़र आ रहे। यहाँ पे काफी सारे लोगो की भीड़ दिखाई दे रही है। यहाँ पे कोई फंक्शन चलता दिखाई दे रहा है। यहा पे कुछ खंबे नज़र आ रहे है।

सिस्टम नजर आ रहा है यहा पे कुछ कैमरा नजर आ रहा है यहा पे काफी सारे लोग खड़े होके देख रहे है यहा पर काफी सारे लोग बैठ के देख रहे है यहा पे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है।

यहाँ पे सब्जी कुछ ताजी दिखाई दे रही है यहाँ पे कुछ फल नजर आ रहे है यहाँ पे कुछ बर्तन दिखाई दे रहे है नीचे कुछ खुर्चिया नजर आ रही है पीछे कुछ दीवार दिखाई दे रही है।

होटल दिखाई दे रही है होटल काफी बड़ी दिखाई दे रही है होटल को काफी अच्छेसे डिज़ाइन किया गया है होटल के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड पर होटल गेट भी कर्नाटका लिखा हुआ है।